तीन लोग बैठे हुए है एक पंडी जी है दो पूजन पाठ करते नजर आ रहे हैं ऊपर लाइट जल रही --

माता रानी की कृष्ण भगवान की राधा रानी की और भी

ये एक बहुत बड़ा हॉल है इस हॉल में व्हाइट कलर का पेन्ट हो रहा है बहुत सारे लाइट लग रही है जो सभी लाइट ऑन है।

बहुत अच्‍छी झांकी है जिसमें सजावट लगी हुई है सभी लोग दोनों साइड खड़े हैं लाइन से एक सामने बैठा हुआ है सभी ने टोपी लगा रखी है नीचे फर्श बिछा हुआ --

कुर्सियां रखी हुई पंखे लगे है। व्हाइट के ऊपर ये पर्पल पर्पल सी लाइट जल रही हैं।

ये एक हो ये एक होटल है जिसमे बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये चार पाँच मंजिल बिल्डिंग है इसमे सभी मे खिड़कियां लगि है ओर लाइट लग जल रही है।

सर्किट लगी हुई है सर्किट भी जल रही है होटल का नाम हे कृष्ना

रंग चरण साठिया बना हुआ है सीढ़ी लगी हुई हैं कांच लग रही है दो कुर्सियाॅं दिखाई दे रही हैं।

साइड मे बिल्डिंग है।